लाइट की व्यवस्था लाइट की व्यवस्था यहाँ से की जा रही है।

अअ डॅम के निकट पर बहोत सारी महिलाए --

अअ जो भी वृक्ष है वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पत्ते पत्ता दिखाई दे रहा है।

समुद्र है समुद्र के बीचो बिच--

छोटा सा टप्पा बनाया है और यह जो घेरान है जो तार से बनाया गया है।

दो व्यक्ति अपने सर के ऊपर दो बोरी लेकर --

येलो कलर की है और एक ब्लैक कलर की है।

वाइन शॉप हैं और वाइन शॉप में --

यहाँ पर स्विमिंग पूल वाटर पूल और जो यहाँ पर व्यक्ति हैं।

और यह पिंजरा चारो तरफ से गहरे हुए हैं और यह पिंजरा तार से बंधा हुआ हैं।

लीची हैं बैगन हैं प्याज हैं और--

दो लोग यह व्यक्ति बैठे हुए नाव हैं और कुछ पक्षी दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा हैं।